इस इमेज मे है यह मकान का दिखाई दे रहे है बोंद भी दिखाई दे रही है यह हरी भरी हरियाली ए दिखाई दे रही है यहा ऊपर ही पे --

इमेज मे यहा पेड़ है हरे भरे एक साइड दिखाई दे रहै है। एक टपरिया बनी दिखाई दे रही है। सूखे से पेड़ है ये भी दिखाई दे रहै है। यहा पहाड़ी एरिया दिखाई दे रहा है और यह--

इस इमेज मे हमे हरी भरी पार्किंग सी दिखाई दे रही है यहा बड़े बड़े झड़ियोके दिखाई दे रही है ओर निचे से कलर दार होते हुये दिखाई दे रही है यह ऊंट खड़े हुए दिखाएं दे रहे है। कछ फुल आचे लगे हुए--

बहुत सारी रेता है बोहत सुंदर रेता लग रही है रेता लगी हुई है घास फूस भी है।

इस स्टेज की डेकोरेशन बहुत ही अच्छे से सजी हुई पड़दे लगे फूल लगे है अलग अलग तरीके से ये दिखाई दे रहा है। यहा चारो साइड से दिख --

इमेज मे यहा बहुत सारे सामान जिम के रखे हुए है। इस बिल्डिंग मे दिखाई दे रहे है। आ तस्वीरो पे तस्वीरे लगी दिखाई दे रही है।

जिम तस्वीरे लगी हुई दिखाई दे रही है। एक रखी हुई दिखाई दे रही है। लोहेके डंडे नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहा एक टीशर्ट दिखाई दे रहा हुवा टीशर्ट मे जिम का बहुतसी सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है एक सेट अ कुछ अलग से है तोकण्यासी कुछ अलग से दिखाई दे रही है।

हरियाली दिखाई दे रही है। यहा लेगे हुए है। हरे वाले दिखाई दे रहे हैं। यह फूल पौधे दिखाई दे--